इस तस्वीर में कुछ लड़कियां निर्त्य करती नजर आ रही है।

जिसमे एक बोक्स में पूरी मछली से भर चुकी है और दूसरी बोक्स आधी भरी है और दो लोग उन मछली ओ को देख रहे है।

यहा एक फुल बाजर की तस्वीर है इसमें खूब सारे फुल नजर आ रहे है इसमें पीले रेंग के फुल लाल रंग के फुल हरे रगं के फुल भी है।

यह तस्वीर एक ए.टी.एम. की है इस ए.टी.ऍम. का नाम कब ए.टी.ऍम. लिख--

जो की स्लेफी खिचवा रहे है और फोटो खिचवा रहे है।

इनका ऑफिस बहुत ही शान शानदार और बड़ा नजर आ रहा है |

इसमें एक कार बनाने वाला कार की सफाई कर रहा है इसमे एक आदमी कार की सफाई कर रहा है।

यह तस्वीर एक घर की है जिन में कुछ इंजीनियर ने काम को अंजाम दे रहे है इन्होने ऑरेंज कलर की शर्ट हेलमेट और पेंट पेहनी हुई है।

छत का काफ काम काफी हद तक हो चूका है।